कैमरा शो हो रहा है ट्यूबलाइट शो हो रही है वॉल्स पे कुछ लगे पोस्टर्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं और सब बच्चे शो हो रहे हैं जो बेंच पर बैठे हुए है।

हमें यहां पे एक जिम दिख रहा है यहाँ पर जिम की मशीन्स रखी है बहुत सारी बहुत से लोग है जो यहां पे जिमिम्ग कर रहे है देन मिरर हमे यहां दिख रहा है कुछ बैनरस हमे यहाँ दिख रहे है जिम के एडवरटाइजमेंट--